छत दिख रही है छत पर पंखे दिख रहे हैं।

और लोहे की पौड़ी भी दिखाई दे रही है।

यहां पे पेट्रोल पंप दिख रहा है।

छत पे लाइट्स दिख रही है पंखा दिख रहा है और दरवाजा दिख रहा है वॉश बेसिन दिख रहा है।

आसमान में बदल दिख रहे हैं।

चोल दिख रहे हैं गत्ते की पेटियां दिख रही हैं छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं और फूल की मालाएं दिख रही हैं।

यह एक मंदिर दिख रहा है मंदिर में बहुत सारी भगवान की मूर्तियां दिख रही है तस्वीरें दिख रही है।

गाड़ी के टायर दिख रहे है एक आदमी दिख रहा है लाल रंग की चेयर दिख रही है।

हाथी का स्टेचू दिख रहा है।

और बिजली का खंभा भी दिख रहा है बहुत सारी बिजली की तारे दिखाई दे रही हैं।

बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

और छत भी दिख रही है।